और उसमे खिड़कियां दिख रही है। दो तीन खिड़किया दिख रही है और नीचे सजा सा है। पर्दा से येलो पर्दा है। नीचे कुर्सियां रखी हैं।